यहां पे एक रूम है। रूम पर बहुत सारे लोग हैं चार से पांच मास भी लगाए हुए हैं। कुछ लोग कोट भी पहने हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग है जो बिल्डिंग का रंग व्हाइट पीला कलर से बनाया गया है।

एक ब गाड़ी भी लगाया गया है जो पीले कलर से पेंट है। एक स्कूटी भी है।

एक लैपटॉप भी है एक एल_सी_डी भी रखा हुआ है।

ऊपर पे बहुत सारे डिब्बे पर भी कुछ सजाया गया हैं।

दुकान है जो ऊपर पे पोस्टर लगाया गया है एक आमदिन जो है मोबाइल चला रहा है।

यहां पे पानी है पानी को पिलर से बना के ऊपर रंत बनाया गया है जो बोल से चलने वाला रंत होता है।

इया पे एक रूम हैं रूम पे आठ से दस कुर्सियां हैं तीन से चार बेंच भी लगाया गया हैं।

अभी भी हैं रोटी भी रखा हुआ है दो--

पंखे भी हैं यहां पे बहुत सारे कुर्सियां भी लगाया गया--

खेत पर एक पक्षी बैठा हुआ है जिसका गोड़ पीला रंग का है।

बिल्डिंग रंग बिरंग के हैं जो कुछ में व्हाइट कलर के भी हैं।

सामने पर गेट भी है एक दीवा भी रखा हुआ है साइड पर पोस्टर भी लगाया गया।

इधर सड़क के पास पे एक ऑटो भी--

उधर पर टाइगर खड़ा है जो इधरे देख रहा है।

टेबुल भी है जो एक से दो है टेबुल पर एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है जो वाइट रंग का है।

यहां प एक लाइट भी जल रहा है।

यह एक कृष्णा भगवान का मूर्ति है राधा जी का यहाँ पे तीन से चार मूर्तियाँ रखा हुआ है।